सड़क है सड़क आगे जा के बंद हो गया है वहींपर एक बाइक --

और यहाँ पे तीन आदमी एक ने येल्लो कलर का टीशर्ट पहना हुआ है यहाँ पर चर्च है चर्च रेड कलर का है--

और उसके ऊपर एक खंबा है जो खड़ा हुआ है यहापर बाइक --

एक अ पीला कलर का फूल है और गुलाब का फूल भी है यहाँ पे पौधा--

सड़क पे चार चक आ रहा है जा रहा है सड़क टूटी हुयी है--

अच्छी बाइक है बाइक के पास आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे लाइन उसके पीछे भी--

और यहाँ पे एक सेक्टर है जो खुला हुआ है उसमे तगड़ा भी है--

और वहा पे कीचड़ लगा है सब खुला हुआ है यह पे पांच चप्पल है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर --

इस्कूल स्कूल है यहाँ पे बहुतसारा मेमोरियल का स्कूल है यहाँ पे डिजाईन भी ह--

और यहाँ पे स्कूल पेंट हुआ है आसमान उछाला है--

यहाँ पे ईठसे जुड़ा रहा है एक आदमी खिड़की लगा रहा है जो --

ओ रेड कलर शर्ट पहना है यहाँ पर खुर्ची है।

अ गोल्ड भी है पायल भी पहनी है निचे बैलून भी लगाए है पिंक कलर क--.

बैगनी रंग का पेण्ट भी हुआ है कुछ लोग आईने दिख --

यहां पे ट्रांसफार्मर बनाने वाला मशीन है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगाये--

हैप्पी कीबोर्ड का दुकान है जहां पे कीबोर्ड --

एक कर्र कार्टून के चित्र है उसके माउस भी ह--

और एम_सी_आई का कुछ है यहां पे एक

साईड में बॉक्स लगाए हुए है उसमे किताब भी है--

एक आदमी है जो शर्ट पैंट पहना हुआ है और वह चित्ता बना है गुफा है--

बैलून लगा रहे है बैलून पिंक कलर का है मतलब येल्लो एक बच्चा बाहर है जो चप्पल पहना है ओ--

यहाँ पे मकान बन रहा है उसका यहाँ पे चार पांच आदमी है और आदमी--

वह पे एक --

एक टेबल है टेबल पे बाती ग्लास है यहां पे एक लेडिस है जो व्हाइट --

ब्लैक कलर का यहाँ पे टेबल है बॉक्स है पंखा है--